यह एक मैदान है यह मैदान पर काम चल रहा है।

और यह मैदान में एक पिंजरा जैसा बनाया गया है।

यह झरना के नीचे बहुत पान --